सामने एक सफेद रंग का घर है।

और उसके सामने एक अधा अधूरा बना हुआ घर भी दिखाई दे रहा है।

और उसके बाजू में ही एक पीला रंग का--

बैठे हुए दिखाई दे रहा है जिसमें एक आदमी फोन पर बात कर रहा है।

जो कि दफ्तर का चीजें हैं वो इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है।

रखा हुआ है जिनमें एक खाना रखा हुआ है ओर वहां पे --

यहां बहोत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि दूर रहे एक मंदिर की तरफ जा रहे हैं।